जैसे की मैं देख सकती हु कि वो बहुत बड़ी खेती है खेती के बीचों बीच बहुत बड़े बड़े पोधे है।

जैसे की मैं यहाँ देख सकती हु एक नदी है नदी को बीचो मो बीच अम बहुत सारे लोग खड़े है और हाथी के --

जैसे की मैं यहाँ देख सकती हु एक तलाव है तलाव के साइड साइड में बहुत सारे बड़े बड़े पोधे है।

और उसके साइड मे छोटे बड़े पोधे है और उसके साइड में रेल पटरी की जगह है।

जैसे मैं यह देख सकती हु की यह एक दुकान है दुकान के अंदर कपड़े का कपडे लगा गया है और दुकान की एंट्री के बाहर वो --

और अ जिन्स और पेंट जिन्स और शर्ट लगा गया है और वन पीस लगाया गया है।